और मैच के साइड में आदमी भी दाड़ रहे है मैच देखने के लिए या तो मैच का मनोरंजन लेने के लिए।

यह पार्क जामताड़ा में ही स्थित हैं।

और डांस का कलाकारी दिखाते हुए भीड़ भी लगी है पब्लिक भी आई हुई है देखने जाते है कि बच्चो सबका डांस करने के लिए बच्चो सब कितने इच्छुक है और कितने सौभाग्यशाली --

चिट्टी और और कुछ खत लिखकर अपने परिवार वालो को जो आदमी बाहार में रहते है वो अपने घर में भेजते है|

ग्राहक आए हुए हैं और सब्जी खरीद रहे हैं घर बना के जा के सब्जी बना के --